नमस्कार जियोजेब्रा में वृत्त पर स्पर्शरेखा पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में आप स्पर्शरेखाओं की प्रोपर्टिज को समझने वृत्त पर स्पर्शरेखा बनाने में सक्षम हो जायेंगे
हम मानते हैं कि आपको जियोजेब्रा के कार्य का बुनियादी ज्ञान है
यदि नहीं तो जियोजेब्रा पर प्रासंगिक ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट httpspoken tutorialorg पर जाएँ
इस ट्यूटोरियल को रिकार्ड करने के लिए मैं उबंटू लिनक्स ओएस वर्जन 1110जियोजेब्रा वर्जन 32470 का उपयोग कर रही हूँ
हम निम्न जियोजेब्रा टूल्स का उपयोग करेंगे
टैंजेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट त्वो ऑब्जेक्ट्स कंपास पॉलीगॉन सर्किल विथ सेंटर एंड रेडियस
नया जियोजेब्रा विंडो खोलें
दश होम और मीडिया एप्स पर क्लिक करें
टाइप के नीचे एड्यूकेशन और जियोजेब्रा चुनें
अब वृत्त पर स्पर्शरेखाएँ बनाएँ
वृत्त पर स्पर्शरेखा को परिभाषित करते हैं
स्पर्शरेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है
संपर्क बिंदु को स्पर्शज्या बिंदु कहते हैं
इस ट्यूटोरियल के लिए मैं एक्सेस के बजाय ग्रिड लेआउट का उपयोग करुँगी
ड्राइंग पद पर राइट क्लिक करें
एक्सेस को अनचेक करें ग्रिड चुनें
वृत्त पर स्पर्शरेखा बनाएँ
पहले एक वृत्त बनाएँ
टूलबार से सर्किल विथ सेंटर एंड रेडियस टूल चुनें
ड्राइंग पैड पर बिंदु आ को चिन्हित करें
एक डायलॉग बॉक्स खुलता है
रेडियस के लिए वेल्यू 3 टाइप करें ओक क्लिक करें
केंद्र आ और त्रिज्या 3 सेमी के साथ एक वृत्त बन गया है
बिंदु आ स्थानांतरित करें और देखें कि वृत्त में समान त्रिज्या है
न्यू पॉइंट टूल पर क्लिक करें वृत्त के बाहर बिंदु ब को चिन्हित करें
सेगमेंट बेटवीन त्वो पॉइंट्स टूल चुनें
बिंदु आ और ब को जोड़ें
एक वृत्तखंड एबी बन गया है
परपेंडिकुलर Bisectorटूल चुनें बिंदु आ और ब पर क्लिक करें
वृत्तखंड एबी पर एक लंब द्विभाजक बन गया है
वृत्तखंड एबी और लंब द्विभाजक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं इंटरसेक्ट त्वो ऑब्जेक्ट्स टूल पर क्लिक करें
प्रतिच्छेद बिंदु सी को चिन्हित करें ब और सी को स्थानांतरित करें लंब द्विभाजक और बिंदु सी ब के साथ कैसे स्थानांतरित करें
सत्यापित कैसे करें यदि सी एबी का मध्य बिंदु है
डिस्टेंस टूल पर क्लिक करें
बिंदु आ सी सी ब पर क्लिक करें
ध्यान दें कि एसी सीबी अर्थात सी एबी का मध्य बिंदु है
टूलबार से कंपास टूल चुनें
बिंदु सी ब पर और आकृति को पूर्ण करने के लिए सी पर फिर से क्लिक करें
दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं
इंटरसेक्ट त्वो ऑब्जेक्ट्स टूल पर क्लिक करें
डी और ई को प्रतिच्छेद बिंदु के रूप में चिन्हित करें
सेगमेंट बेटवीन त्वो पॉइंट्स टूल चुनें
बिंदु ब और डी ब और ई को जोड़ें
वृत्तखंड बीड और बीई वृत्त सी की स्पर्शरेखाएँ हैं
अब वृत्त की इन स्पर्शरेखाओं का कुछ अन्वेषण करते हैं
सेगमेंट बेटवीन त्वो पॉइंट्स टूल चुनें
बिंदु आ डी और आ ई को जोड़ें
त्रिकोण एबीडी और अबे में वृत्तखंड AD वृत्तखंड एई हैंवृत्त सी की त्रिज्या
अब अलजेब्रा व्यू में देखें वृत्तखंड AD वृत्तखंड एई
∠ADB ∠BEA वृत्त डी के अर्धवृत्त का कोण
कोणों को मापते हैं
एंगल टूल पर क्लिक करें
बिंदु आ डी ब और ब ई आ पर क्लिक करें
कोण समानांतर हैं
वृत्तखंड एबी दोनों कोणों के लिए समान है
इसलिए △ABD ≅ △ABE सास अनुरूपता के अनुसार से
इसका तात्पर्य है कि स्पर्शरेखाएँ बीड औरBE समान हैं
अलजेब्रा व्यू से हम पता कर सकते हैं कि स्पर्शरेखाएँ बीड और बीई समान हैं
कृपया ध्यान दें एक स्पर्शरेखा हमेशा वृत्त की त्रिज्या पर समकोण होता है जहाँ स्पर्श होती है
बिंदु ब और सी को स्थानांतरित करते हैं
बिंदु ब के साथ स्पर्शरेखाओं को स्थानांतरित कैसे करें
अब इस फाइल के सेव करें
फाइलगटीजीटी सेव एएस पर क्लिक करें
मैं फाइल का नाम tangent सर्किल टाइप करूँगा सेव पर क्लिक करें
एक प्रमेय का वर्णन करते हैं
स्पर्शज्यात्व बिंदु पर स्पर्शरेखा और जीवा के मध्य का कोण समान जीवा द्वारा अंतरित एक उत्कीर्ण कोण के समान होता है
स्पर्शरेखा और जीवा के मध्य का कोण डीएफबी जीवा बीएफ का उत्कीर्ण कोण एफसीबी
प्रमेय को सत्यापित करते हैं
नया जियोजेब्रा विंडो खोलें
फाइल जीटीजीटी न्यू पर क्लिक करें
एक वृत्त बनाएँ
टूलबार से सर्किल विथ सेंटर थ्राउघ पॉइंट टूल चुनें
केंद्र के रूप में बिंदु आ पर और फिर से बिंदु ब के लिए क्लिक करें
न्यू पॉइंट टूल चुनें
परिधि पर बिंदु सी और वृत्त के बाहर बिंदु डी को चिन्हित करें
टूलबार से टैंजेंट्स टूल चुनें
परिधि और बिंदु डी पर क्लिक करें
वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएँ बन गई हैं
स्पर्शरेखाएँ वृत्त पर दो बिंदुओं पर मिलती हैं
इंटरसेक्ट त्वो ऑब्जेक्ट्स टूल पर क्लिक करें
संपर्क बिंदु के रूप में बिंदु ई और फ़ को चिन्हित करें
एक त्रिकोण बनाएँ
पॉलीगॉन टूल पर क्लिक करें
बिंदु ब सी फ़ और आकृति को पूर्ण करने के लिए ब पर फिर से क्लिक करें
आकृति में वृत्तखंड बीएफ वृत्त सी की जीवा है
एफसीबी वृत्त सी पर जीवा द्वारा उत्कीर्ण कोण है
∠DFB वृत्त सी पर स्पर्शरेखा और जीवा के मध्य का कोण है
कोणों को मापते हैंAngle टूल पर क्लिक करें बिंदु डी फ़ ब और फ़ सी ब पर क्लिक करें
ध्यान दें कि ∠DFB ∠FCB बिंदुD और सी को स्थानांतरित करें वे स्पर्शरेखाएँ और जीवाएँ बिंदु डी के साथ स्थानांतरित होती हैं
अब इस फाइल को सेव करें
फाइलगटीजीटी सेव एएस पर क्लिक करें
मैं फाइल का नाम tangent एंगल टाइप करुँगी
सेव पर क्लिक करें इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सत्यापित करना सीखा
एक बाहरी बिंदु से बनी दो स्पर्शरेखाएँ समान होती हैं
वृत्त की त्रिज्या और स्पर्शरेखा के मध्य का कोण 900 होता है
स्पर्शरेखा और जीवा के मध्य का कोण जीवा द्वारा अंतरित एक उत्कीर्ण कोण के समान होता है
एक नियत कार्य के रूप में मैं चाहती हूँ कि आप सत्यापित करें कि स्पर्शरेखाओं के मध्य वृत्त पर एक बाहरी बिंदु द्वारा बना कोण केंद्र पर संपर्क विंदु से जुड़े रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण का पूरक है
सत्यापित करने के लिए एक बाहरी बिंदु से स्पर्शरेखाएँ बनाएँ
स्पर्शरेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं को चिन्हित करें
वृत्त के केंद्र पर संपर्क बिंदु जोड़ें
केंद्र में कोण को मापें और स्पर्शरेखाओं के मध्य कोण को मापें
दो कोणों का योग क्या है
केंद्र और बाहरी बिंदु को जोडें
क्या रेखाखंड कोण को केंद्र पर प्रतिच्छेद करते हैं
सुझाव एंगल बाइसेक्टर टूल का उपयोग करें
नियत कार्य का आउटपुट इस तरह दिखना चाहिए
कोणों का योग 1800 है
रेखाखंड कोण को प्रतिच्छेद करते हैं
इस उर्ल पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरियल को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड़ करके भी देख सकते हैं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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध हैhttpspoken tutorialorgNMEICT Intro यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है
आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं श्रुति आर्य अब आप से विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद